यह तस्वीर एक जंगल का है जिसमें एक आदमी उस जंगल में घुस चुका है।

ऊपर आसमान है और बीचे में पेड़ हैं।

और यहाँ घास भी है और हरियाली भी बोहोत है।

गए तस्वीर में सूर्योदय का दृश्य साफ दिख रहा है।

कपड़ों पे दूसरा कपड़ा भी है जो कि काफी अच्छा भी है।